यहां पर एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड मे कुछ बच -बच्चे बैठे हुए है जो दिखाई दे रहे है यहा पर पेड़ लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है ग्राउन्ड में कुछ हरियाली --

यहां पर एक खंभा लगा हुआ है जिस पर लाइट लगी है जो दिख रहा दिखाई दे रहा है यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ जो दिखाई दे रहा है और यहां पर एक व्यक्ति दिख रहा है।